एक सरकारी ऑफिस का भवन है।

इस मॉल में बहुत सी सीढ़िया है ऊपर जाने की नीचे आने की सीढ़िया है।

इ सुंदर सी प्रतिमा है इस इस स्टैचू की --

एक जीव है ये एक महिला प्रतिमा महिला की प्रतिमा है एक बैठे हुए।

ये अपने लेकर कुछ बच्चे बैठे हैं पीछे पीछे टीचर खड़े हुए हैं।

बैंक का बोर्ड लगा हुआ है बैनर लगा हुआ है बैंक --

ये हमें एक सामने बोर्ड लगा दिख रहा है इस पर वेलकम टू --

पीले कलर का पेंट हो रहा है इस बिल्डिंग में बड़ी सी बिल्डिंग है।

यहा दो गधे खड़े हुए है ये दो गधे खड़े है यहा पर --

ये रोड के सामने एच डी एफ सी बैंक है।

गाड़ियां खड़ी है एच.डी.एफ.सी. बैंक के नीचे।

ये मकान की छत बनाते हुए दिख रहे है।